और ब्लैक कलर से ज्वेलर्स लिखा हुआ है नीचे तीन बाईके पार्क हैं और एक आदमी खड़ा है।

यहां पर बहुत से चेबल और बहुत सारे कुर्सी रखे हुए हैं और कुछ इंसाने बैठे हुए हैं।

और ऊपर पूरा बहुत सारे पर्दो से डेकोरेट किया गया है सामने टेंट बना हुआ है यहां पर बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं।

यहाँ पर बहुत सारे छड़ लगे हुए है। और बहुत सारे सीमेंट सब गिरा हुआ है।

कुछ नारियल के पेड़ दिख रहे हैं और आसपास बहुत सारे घर भी दिख रहे हैं।

एक मुर्गा खड़ा है जिसके पैर पर एक रस्सों बांधी हुई है। यह मुर्गा ब्लैक और व्हाइट कलर का है।

इस फोटो में पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसके सीलिंग का कलर सफेद है और ब्लू है।

और दीवार में बहुत सारे खिड़कियां भी दिख रही हैं सामने एक झंडा लगा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा सेल बना हुआ है जिसमें सेपरेट काउंटर बना हुआ है।

इस फोटो में सामने गैरेज दिख रहा है जिसके काउंटर का कलर सफेद है।

इस फोटो में सामने एक डैम दिख रहा है यहां पर एक लंबा सा चलने का रास्ता है।

इस फोटो में सामने एक दुकान दिख रहा है जो की टेलर का दुकान है।

सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसका कलर व्हाइट और ग्रे करके का है और येलो कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और सामने एक ब्लैक बोर्ड है और एक व्हाइट बोर्ड है जहां पर कुछ डिस्प्ले हो रहा है।

इस फोटो मे एक बड़ा सा जगह दिख रहा है। जहा पर सामने बहुत से औरते और कुछ आदमी लोग खड़े है।

अंदर कुछ इंसान चल रहे हैं और आसपास बहुत सारे पेड़ और पौधे भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक रोड दिख रहा है जहां पर एक मार्केट है और एक खेला जैसा दिख रहा है।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

और बिल्डिंग के नीचे एक रेड कलर का छोटा सा गाड़ी भी पार्क है। आसपास बहुत सारे घास उगे हुए हैं।

अ कुछ लोग सामानें खरीद रहे हैं बहुत सारे बोरे भी दिख रहे हैं।

एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर डॉक्टर प्रियंका गुप्ता लिखा हुआ है।

सामने दो तीन इंसान लोग चल रहे हैं सामने एक मंदिर दिख रहा है जो कि व्हाइट कलर का है और उसमें नाग का चित्र बनाया हुआ है।

सामने दीवार का कलर सफेद है जिसमें शुभ लिखा हुआ है।